और कुछ सामान रखा हुआ इधर मेज रखी हुई है अह बहुत दूर तक बना हुआ है बहुत बड़ा बना हुआ है शॉप ।

उसी में सारे सामान बढ़िया से सजाया हुआ नजर आ रहा है।